यह ताजमहल का फोटो है ताजमहल काफी अच्छा जगह है जहाँ पर दूर-दूर से लोग यहाँ घूमने आते हैं इंजॉय करते हैं।